नीचे जमीन पर स्काई कलर की कारपेट बिछी हुई है।

इस कमरे में एक मिरर भी है मिरर के सामने बॉडी बनाने का अनेक प्रकार का मशीन रखा हुआ है।

यह एक छोटे से कपड़े दुकान का दृश्य है जो रोड के किनारे है।

यह एक फूलों की बागान का दृश्य है इस बागान के चारों तरफ बाउंड्री किया हुआ है।

यह एक बड़े से कमरा का दृश्य है डांस एकेडमी का।

इसके सीलिंग में रंग बिरंग के बैलून भी लगे हुए हैं इस कमरे में एक ए_सी भी लगा हुआ है।

आगे में ब्राउन कलर का कारपेट बिछा हुआ है।

हाथी को नहला रहे हैं एक नदी के बीचो बीच पूल भी बना हुआ--

बस के आगे एक काउंटर जैसा बना हुआ है स्टैंड बांस की मदद से।

पेट्रोल लेने के लिए एक बड़ी बस और दो बोलेरो भी--

इसके खिड़की में व्हाइट कांच लगे हुए हैं।

यह एक खेत खलिहान का दृश्य है।

खेत के बगल में एक टेंट हाउस जैसा बनाया हुआ है इसमें बहुत सारे कुर्सी लगे हुए हैं।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

दुकान के आगे झालर भी लटके हुए हैं और एल_ई_डी बल्ब लगे हुए हैं बगल में एक पेड़ भी है।

एक रेड कलर की कार भी लगी हुई है।

नीचे में छोटे छोटे घास भी जमे हुवे हैं।

रोड पर अनेक प्रकार की गाड़ियां चल रही है जैसे बस कार स्कूटर टेंपो बहुत सारे वाहन चल रहे हैं।

यह एक स्विमिंग पूल का दृश्य है स्विमिंग पूल के चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं।

इसके दीवार पर फ्लावर पॉट बने हुए हैं।